बिल्डिंग के इंट्रेंस पर कुछ लोग दिक रहे हैं।

एक छोटी ब्लू कलर की खिलौना गाड़ी दिख रही है।

बैकग्राउंड में और भी शॉप्स और लोग थोड़े धुंधले दिख रहे है।

कुछ लोग शोरूम के अंदर घूम रहे हैं और मोटरसाइकिल्स देख रहे हैं।

कुछ कस्टमरस अंदर बुकस देख रहे हैं।

दिख रहा है आसमान क्लॉउडी है ये एक सुनसान रोड का सीन है।

बैकड्राप के सामने खड़े हैं।

जैसे कि एडीडास एस_एस और टोन हर बैट के हैंडल के ऊपर एक छोटी बॉल रखी हुई है।

फ्लोर पर ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल ग्रेस लगा हुआ है।

कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए हैं ओवरऑल यह एक ऑफिस का सीन है।

और तीन आदमी दिख रहे हैं।

आकाश में बादल छाए हुए हैं।

ये एक होटल का रिसेप्शन एरिया लग रहा है।

ये किसी सरकारी बिल्डिंग की तरह लग रहा है।

ये एक स्ट्रीट सीन है रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए है।

मूर्ति व्हाइट कलर की है और उन्होंने रुद्राक्ष की माला पेहनी हुई है।

आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

अंदर बेकरी के आइटम्स जैसे ब्रेड और बिस्किट दिखाई दे रहे हैं।

कमरे में कुछ चेयर्स और टेबल्स भी दिख रहे हैं शायद पढ़ने के लिए।